इस चित्र में एक बड़ी सी जगह में--

बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक कूलर भी रखा हुआ है और एक--

बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं और--

रास्ते पर कुछ गाड़ियाँ भी चलती हुई दिख रही हैं।

यह एक साड़ी की दुकान का चित्र है जहां पर ऊपर--

अलंकार ज्वेलर्स भी लिखा हुआ है।

पास में साड़ी की दुकान भी नजर आ रही है।

दे रहा है और कुछ साइकलें और लोग भी खड़े हुए नज़र --

कुछ लोग खड़े और बैठे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक चौराहा नजर आ रहा है।

खेत दिखाई दे रहा है।

लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे--

गमले भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां पर सब लोग सफेद रंग की पोशाक पहने हुए हैं और एक--

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग रेत गिट्टी और--

पेड़ भी लगे हुए दिखाए--

बहुत सारे छोटे बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और एक--

रेखों में जमा हुआ है फ्लोवर पोर्ट --

कॉफी का मग दिखाई दे रहा है।

यहां छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बहुत सारे--

इस चित्र में एक रोड दिखाई दे रहा है लोडिंग और--

तार लाइट के खंबे भी लगे हुए दिखाई--